अंकल जी बैठे हुए हैं जो झरकण और सफेद शर्ट पहने हुए बैठें हुए है इसमें एक कैलकुलेटर रखा हुआ है एक कैची रखी हुई है पेन रखे हुए है यहां पर मेडिकल की दुकान पर एक पंखा लगा हुआ है। एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ घड--

इस इमेज में हमें मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर फूलों की माला दिखाई दे रही है। इसमें एक ब्लाक शर्ट पहने हुए व्यक्ति--

इस में हमें मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे फूल रखे हुए हैं इसमें फुग्गारे रखे हुए हैं इसमें आलू टमाटर दिखाई दे रहे हैं इसमें बहुत से लोग खड़े हुए ब्लैक शर्ट पहने--

फ्रीज रखा हुआ है इसमें ऊपर लगा हुआ है बजाज-फाइनेंस ओल्ड टाटा-स्काई

बालाजीपुरम तो दिखाई दे रही है यहां पर थाली रखी हुई है यहां पर बहुत सारी किताब रखी हुई है यहां पर एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े हुए जो चश्मा लगा हुए है।

चित्र चलेगा यहां पर बहुत सारी बहुत अच्छा मैदान बना हुआ है देखने में बहुत--

इसमे हमें एक दुकान दिखाई दे रही है इसमें सब्जी रखी हुई है प्याज आलू लहसन--

इमेज मे हमें मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है इसमें एक किराणे की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें शैंपू हरदी चना और बहुत सारी चीज टंगी हुई है एक महिला जा रही है मास्क लगाए हुए-- ।

यहां पर खपड़ो का घर बना हुआ है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसमें व्हाइट कलर का पैंट दिखाई दे रहा है इसमें आगे दिखाई दे इसमें तार दिखाई दे रहा है देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें ए क कैमरा दिखाई दे रहा है सी_सी_टी_वी इसमें हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें हमें खिड़की दिखाई दे रही है देखने में बहुत अच्छी मस्जिद दिखाई दे रही इसमें वाइट कलर का पेंट दीवारो पर बहुत अच्छा लगा--

मुझे ये देखकर में बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं देखने में पर्वत बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं यहा पर गुफा जैसी दिखाई दे रही है।

और ये इसमे भे गईया दिखाई दे रही है इसमें दरवाजा दिखाई दे रहा है देखने में बहुत अच्छी गाय दिखाई दे रही है।